यहां पे ज्वेलरी प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे कि कान की बाली गले का हार बाजे वगैराह ये सब मिलता है।

यह पारक भी होता है ये पंचवटी नाम से पारक है इसमें काफी पौधे लगे हुए हैं पेड़ लगे हुए हैं।

कार खड़ी हुई है दो बाइक है एक साइकिल है एक जे_सी_बी है।

यह फोटो एक नॉर्मल सी दुकान है जहां पे कुलर पड़ा हुआ है।

इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम पड़े हुए हैं एक कूलर है उसके पास में कहीं पलक लगे हुए हैं यहां एक कांटा भी लगा हुआ है।

इत्यादि इत्यादि इसमें कुछ समान पड़े है जैसे की शैंपू सिरम फेस वॉश स्क्रब एक काउंटर भी है उसपे लिखा हुआ है थ्री सिक्सटी सैलून --

फिलिप्स के भी काफी आइटम हैं ऐसे आइटम है ए_सी भी लगी हुई है।

ये एक रेस्टोरेंट की फोटो है जिसमें कई तरह के कई चीजे पड़ी है जैसे की सॉस पड़ा हुआ है वेफर पड़े हुए है।

पास में एक रोड है जोकि रानी बाजार रोड की तरफ निकलती है वर्षा ऋतु नाम का एक रेस्टोरेंट है इसमें साइड में एक आदमी खड़ा --

पीछे दीवार में काफी सारे प्राइजेस कि फोटो हैं काफी सारी डिग्री या लियी हुई हैं काफी स्मृति चिन्ह हैं एक सी_सी_टी_वी कैमरा लगा हुआ हैं

ये एक जंगल की फोटो लग रही है इसमें की एक आदमी है उसके हाथ मे एक छोटा सा फूल है शायद ये फूल गुलाब --

में एक ब्लू कलर की टेबल पड़ी हुई हैं उसके ठीक पास में कुर्ची हैं एक थिला पड़ा हुवा हैं कुछ खाते कुछ किताबें पड़ी हुई है।

एक महिला बैठी हुई है जो कुछ तोल रही है।

एक आदमी ग्रे कलर के को कपड़े पहने हुए है।